इस तस्वीर में हमें एक व्यक्ति दिख रहे हैं।

के सामने एक बेड दिख रहा है जिसके नीचे बहुत सारे ड्रॉर हैं साथ में एक हरे रंग का डस्टबिन भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें कुछ लोहे के ब्लॉक्स देख रहे हैं जो कि बहुत सारे पड़े हैं।

आस पास बहुत सारी हरियाली है बहुत लंबी लंबी शाखाएं निकल रही है।

वहां पर एक महिला अंदर की ओर जा रही है।

गाड़ी दिख रही है ऑटो रिक्शा भी है बहुत सारे लोग आसपास इधर उधर खड़े हुए हैं।